यह दूल्हा स्टेज पे खड़ा है सा --

बस जा रही है । एक वाहन भी जा रही है इधर से छोटी वाहन भी ।

कार लगी हुई है। कार के पीछे पेड़ है। कार का नंबर बी आर ज़ीरो सेवन यू नाइन टू फोर ऐट है। यह बहुत ही बढ़िया कार है। बहुत अच्छी स्पीड है। बहुत माइलेज इसके बहुत ही अच्छी इसकी माइलेज है।

बोहोत भीड़ लगी हुई है। सामने एक बाइक है बगल में एक लड़का बैठा हुआ है तीन-चार बाइक खड़ी है ।